और यहां पे एक झोपड़ी बनी हुई है उसपे झंडा लगा हुआ है और बहुत सारे अलग-अलग झंडे और लाइट है और लोग खड़े है बैठे हुए है।